यहां पर एक स्विमिंग पूल है यहां पर बहोत से कमरे बने हुए हैं।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

इसमें बहोत से जंगल दिखाई दे रहा है बहोत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

उस पत्थर पे एक आदमी बैठा है जिसने काले रंग की शर्ट पहन रखी है।